इस जगह पर मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पर साइकिल दिख रही है।

इस जगह पर हरियाली दिखाई दे रही है।

पुरुष ने टी-शर्ट और पेंट पहना हुआ है।

गार्डन में हरियाली दिख रही है।

स्टेज पर सोफा रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर गमले दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक पुरुष खड़ा हुवा दिख रहा हैं।

इस जगह पर स्टेज दिखाई दे रहा है।

यहां पर पुरुष भी दिख रहे हैं।